और इस तस्वीर के पास कुछ आदमी खड़े हैं।

और स्कूल की गैलरी में कुछ व्यक्ति खड़े हैं और दो कुर्सी रखी है दीवाल के पास।

और एक डब्बा रखा है।

यह एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान है इस दुकान में एक काउंटर है।

और उसकी बराबर में एक दीवाल है। उस दीवाल पर एक बोर्ड है।

और कुछ पेन के डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ आदमी खड़े हैं और कुछ जा रहे हैं।

उसके बराबर में जीना है जिस पर लिखा है अवेलेबल ऑफ फर्स्ट फ्लोर ।

और उसके सामने एक गेट है उस पर होप इंडक्शन लिखा हुआ है।